पार्किंग के बराबर में एक पिंक कलर का घर है।

गमलों के बराबर में छोटी-छोटी सी टाइलो से बना एक रास्ता है।

कइ वाहन खड़े हुए है जैसे की बाइक ओर गाड़ी --

एक खिलौना वाली ट्रेन की गाड़ी जा रही है।

यह एक भारतीय बैंक है। इस बैंक का नाम इलाहाबाद बैंक है।

जिसके ऊपर बहुत सारी पट्टियां लगी हुई हैं।